यह एक मंदिर का दृश्य है यह मंदिर नारंगी रंग का दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य है यहां पर अंदर का दीवार पीले रंग का दिखाई दे रहा है।

एक कुर्सी भी किनारे में रखी हुई दिखाई दे रही है।

आसपास में बहोत सारा बड़ा बड़ा दुकान भी दिखाई दे रहा है और बहोत सारा दुकान में ब्लू रंग का शटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उजले रंग का ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा--

यहां पर अंदर में बहोत सारा सैनिटरी का तरह तरह का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूटी का शोरूम का दृश्य है यहां पर अंदर में सभी तरफ की दीवारें उजले रंग की दिखाई दे रही है।

नीचे जमीन पर बहुत सारे मिट्टी इकट्ठी करके रखी हुई दिखाई दे रही है।

अंदर मे बहोत सारे लोग खड़े हैं और बाहर में भी एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।